यहां पे बिरयानी रखी हुई हैएक जग पानी रखा है ऊपर आदमी आते हुए दिख रहे है यहां पे चटनी रखी है रेड चटनी व्हाइट चटनी रखी है एक ग्लास है यहां पे रखा और उसके पीछे भी--

टेबल है और पूरा रेड कलर की शर्ट पहन रखी है।

यहाँ पर एक फेक्टरी के अंदर यहाँ पर एक पीछे मशीन रखी है और यहाँ पर ये काफी बड़ी इस फेक्टरी और यहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है।